बहुत सुन्दर है और कुछ बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है घर सब है मकान सब है। बहुत अ --

एल.ई.डी. लागल है। ला रंग बिरंग के केक है। बहुत सुन्दर --

एक बाल्टी पानी है नदी है। अ दुगो लेडीज जाए छे।

बहोत सुंदर डिज़ाइन के घर है।